मनोरंजन के लिए देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को।

घूमने के लिए आया है देख सकते है काफी मस्त --

काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा है होगा आप लोगों को और बहुत ही --

टेंपो ऑटो खड़ा है और यहाँ पे कुछ करने वाले है देख सकते हैं और काफी मस्त लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को।

हेलो गाइस देख सकते हैं ये बाजार है और भीड़ लगे है।

दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे मैच चल रहा है देख सकते हैं और --

पटरे पे आलू वगैरा रखा हुआ है और ये रासन दुकान है और ये भाई साहब अपना --

देख सकते है ये पंखा

और लोग है देख सकते हैं यहां पे काफी सारे।

भीड़ लगा हुआ है और ये भाईलोग पैसा लेने के इंतजार में है और इधर --

हैलो गाइज देख सकते हैं यहां पे कितने ताजे-ताजे फूल मिल रहे है देख सकते हैं कमल फूल --

इस साइड से उस साइड जाने के लिए और यो भाई लो।

धुन बजाने वाला चाहिए देख सकते है ये राधा-माँ और ये कृष्ण कन्हैया हैं और इसके मु --

हेलो गाइस देख सकते है ये बुक स्टोर है और ये काफी मस्त लोग दिखाई दे रहा होगा और इसमें--

लाल ता सब लाल हरा तो हरा काला तो काला ब्लू तो ब्लू पीला तो पीला।

राइट से मोड़ सकते हैं और साइड से सीधा जा सकते हैं।

पेड़-पौधे लगे हुए हैं नारियल के खजूर के और हरा-भरा सीन दिखाई दे रहा है--

और ये हरा-भरा पीछे तरफ का ग्राउंड देख सकते है बहुत ही जबरदस्त।